और उनके उपर एक बहोत ही प्यारा सा पेड़ देखने को मिल रहा है जो की हरा भरा है और उसकी टहनियां साफ नजर आ रही है।

साइड मे अभी कुछ गड़िया खड़ी हुई हैं मिल रही हैं और एक तरफ हुमे कुछ झाड़ियाँ हरी हरी देखने को मिल रही हैं दूसरी तरफ हुमें ग्रीन कलर की एक दीवार देखने को मिल रही हैं और स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं सामने की तरफ बिल्डिंग हैं।

और अ उसमे कुछ हमें चमच जेसी चीजें देखने को मिल रही हैं साइड़ मे चटनी भी रखी--

जोकि काफी हिफाज़त से रखे हुए है उसमें हमें उपर से आती हुई ट्यूबलाट की रौशनी भी नजर आ रही है जो की रिफ्लेक्ट हो रही है ग्लास की वजह से।

और हमें वहा पे कुछ विंडोस नजर आ रही है विंडोज के साथ में रखे हुए हमें कुछ जिव्बिंग एकुप्मेन्ट देखने को मिल रहे है।

पिक्चर में हम एक किनारे को देख पा रहे हैं किसी पानी के किनारे को और हमे वहां पर कुछ प्लास्टिक की चीजें रखी हुई मिल रही हैं जो कि शायद बह के आई --

इसमें हमे जमीन पर कुछ बिछाये ऐ हुए कुछ बिछाये हुए बोरी का मेट जैसा देखने को मिल रहा है इसपे बहोत सारी लडकिया है और एक तरफ बैठी हुई है।

पिक्चर में हमें एक पानी का एक समुन्द्र या फिर एक तालाब जैसा कुछ नजर आ रहा है।